इस फोटो में हम देख सकते है की ये एक क्लब ए.टी.एम. बना हुआ है एक व्यक्ति ए.टी.एम. से पैसे निकल निकाल रहा है।

इस फोटो में हम देख सकते हैं की एक लड़का --

तीनो शेल्फ के ऊपर छे छे वीवो के फ़ोन पडे हुए हैं जो की टच स्क्रीन है और रेडमी का भी फ़ोन पड़ा है |

ये फो टो एक जंगल की है । जहाँ पर काफी सारा हरा-भरा जंगल है । यहाँ पाँच आदमी ही जा रहे है ।

और डांग खड़ी हुई है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग --

बोई गई है जो की काटने के लायक है और इन खेतों --

यहां पर तीन मोटर साइकल आगे खड़े हुए हैं उन मोटर साइकल के पीछे --

और एक नदी गुजर रही है नदी के ऊपर से एक पुल बना हुआ है।